लोग बहोत आते जाते हैं यहां पर--

ये एक आदमी खड़ा हुआ है किसी स्टेशन के ऊपर --

उसके साथ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा--

पर बच्चे दिखाई नहीं दे रहे बच्चा तो कोई नहीं--

इसके इर्द गिर्द देखिए कितने ही सुंदर--

यह एक कॉलेज की अलमारी है।

यहां पर बच्चों को सिखाया जाता है।

बड़ी ही प्यारी फोटोस लगाई गई है।

यहां पर बहोत सारे शूज अलग अलग ब्रांडेड शूज मिलते हैं।

ये बहोत ही अच्छा एक बीयर बार का--

ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है।

कलर कांबिनेशन सजावट का बहुत ही अच्छा है।

आपको बहुत ही ज्यादा रश मिलेगा पानी की बॉटल भी मिलती हैं जो बहोत ही महंगी होती है।

का नाम मेंशन किया हुआ है।